बहोत सारे डंबल्स रखे हुए है बड़े बड़े।

डेकोरेशन वाले स्कूटी खड़ी हुई है सामने से ये लाइट जल रहे हैं।

कार के पीछे बहोत सारे आदमी हैं कार का कलर गोल्डन है।

कार के ऊपर एक ताश का पत्ता बनाया गया है।

तस्वीर में दिखाया गया है कि यहां पे चार चेयर लगे हुए हैं।

पर बहोत सारे पोस्टर का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है यहां पे--

इस तस्वीर में दिखाया गया है कि दो अम व्यक्ति हैं जो--

और पीछे पेड़ है गन्ना है।

और बहुत सारे साइकिल बहुत सारे बाइक --

इस तस्वीर में दिखाया गया है कि एक जयमाल का जो अ सेट होता है वो लगाया गया है।

अं बैठने की पिकनिक मनाने की एक व्यवस्था बनाई गई है जहां पे--

सोफे बहोत सारे पिलो हैं टेबल है।

इन दोनों को दिखाया गया है कि दोनों एक ही साथ है इसमें ऐ_सी लगा हुआ है बैंक में भी ऐ_सी लगा हुआ है।

और खेत में छोटे छोटे पेड़ हैं बहुत सारे।

उस आगे और बहोत सारे पेड़ हैं पानी लगा है खेतों में।